ओवर ब्रिज बनी हुई है। पानी भी नीचे ऊपर जा रही है। अ देखने में बहुत सुन्दर लगती है इधर और हरी भरी भी दिखाई दे रही है और अति सुन्दर सुन्दर ही दिखाई देता है।

यहाँ पे लिखा हुआ अरविन्द स्टोर अरविन्द स्टोर और यहाँ पे हर चीज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे खड़ा हुआ है।

और बहुत बहुत मस्त ही दिखायी रहा है और अति सुँदर लगता है देखने में और इधर बादल भी छायी हुई है और बहुत बढ़िया है।

और अति ही सुंदर लग रहा है| बिल्डिग भी बनी हुई है और हरी भरी दिखाई दे रहा है और अति सुन्दर ही सुन्दर लग रहा है देखने में।